और समुन्द्र में एक स्थिर जल दिखाई दे रहा है। समुंद्र के आस-पास का जो एरिया है वो सूखा भी दिखाई दे रहा है। समुंद्र के बीच में भी कुछ छोटी-छोटी रेत --

कुछ पेड़ों का आकार बहोत ही बड़ा है और भी विशालकाय है और इसमें कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे भी हैं।

यह एक चित्र है और इस चित्र में दर्शाया गया है की यह एक इंडियन पोस्ट ऑफिस है।

जिसमे की कुछ हरे-भरे छाता भी लगी हुई है। जिसमे कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग चेयर पे बैठ --

यह एक मस्जिद है और मस्जिद का रंग भूरा दिखाई दे रहा है जिसमें की एक बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है और एक छोटी सी दिखाई दे रही है।

कहीं दरवाजे भी है। दरवाजे के ऊपर कुछ रिसेप्शन कोंट जैसा लिख --

और एक दरवाजा भी है। दरवाजा की ऊपर एक येलो कलर की --

पिंक और पीला दिखाई दे रहा है। जिसमें की मस्जिद के ऊपर हरे रंग की बनाई हुई है सीमेंटेड से।

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक बहोत ही सुंदर मंदिर को दर्शाया गया है।

मंदिर का रंग पीला और लाल हरा कई सारे रंगों से बनाया हुआ है।

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर में स्कू एक स्कूल को दर्शाया गया है जिसमें की छोटे-छोटे बच्चे एक --

नार्मल काउंटर पे खड़े होकर एक-दूसरे को समान देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

क्रिकेट ग्राउंड के आस-पास का जो एरिया है वो हरे घासों से बना हुआ है।

इसमें कुछ ही दुरी पे एक टिन शैड का भी बना हुआ है। हिरन का रंग भूरा भी दिखाई दे रहा है।

एक-दूसरे का हाथ पकडे हुए हैं और एक लोग साइड में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वह एक ब्लू रंग की टी-शर्ट और चश्मा पहने हुए है। वह --